यहाँ एक बिल्डिंग को बोहत ही अच्छे से काफी सारी लाइटो से सजाया गया है।

और इन कुंडो में आगी जलती हुई दिखाई दे रही है यहाँ इस फोटो में हमें चार कुंड बने हुए दिखाई दे रहें हैं।

हम यहाँ पर काफी सारी नई मोटर साइकिल रखी हुई दिखाई दे रही हैं पीछे टेबल पर कुछ लोग बैठे हुए हैं शायद वह कुछ खाना खा रहे हैं।

इस फोटो मे हम देख सकते है की एक एक स्कूल के बालकनी मे बोहत सारे बच्चे एक लाइन मे बैठे हुए है।